किसी होटल या प्लेस की हैं सफेद रंग की बहोत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें बहोत सारे दरवाजे खिड़कियां है।

एक नीले रंग का बोर्ड लगा है बड़ा सा जिसमें एच_पी लिखा है।

पीछे ब्लैक बोर्ड है पंखे भी लगे हुए हैं चालीस पचास बच्चे हैं।

नीले रंग की कुर्सियां लगी हैं एक बैनर भी लगा है।

सफेद पीले रंग की लाइटें लगी हुई है ए_सी लगा हुआ है।

बोहोत ही सुंदर केक है चॉकलेट वाला केक है।

किसी डांस फंक्शन का है एक बड़ा सा स्टेज बना है।

और टाइल्स प्योर ब्लॉक लगे हुए हैं बहोत सारे गार्डन है फिर डस्टबिन भी है रेड कलर का आस पास बहुत सारे पेड़ है बड़े बड़े हरे हरे पेड़ है।

जिसके बाहर गमले रखे है एक लाल रंग का डस्टबिन रखा है।

इस तस्वीर मे जो फोटो है ये किसी शादी फंक्शन का मेन गेट हैं।

पीले रंग की लाइट जल रही है बहोत सारे फूल लगे हैं लाल सफेद रंग के।

एक बहोत सुंदर तालाब है डूबते हुए सूरज का रोशनी है।

बहुत दो बड़े बड़े पेड़ लगे हैं बोहोत ही सुंदर नजर आ रहा है आसपास बोहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक टीने का शेड लगा हुआ है बहोत सुन्दर लग रहा है बीच में एक अ पौधा पेड़ भी लगा हुआ है बहोत ही सुन्दर गार्डेन है बहोत ही प्यारा नजारा है।

दो बेड लगे हैं एक पिंक कलर का चादर है।

दो आदमी है जो की सब्जी बेच रहे हैं।

बहोत सारे प्लांट लगे हुए हैं सब ग्रीन ग्रीन हैं दो महिलाएं खड़ी हैं एक ने लाल रंग की ड्रेस पहनी एक ने नीले रंग की साड़ी पहनी है।

सफेद और नीले रंग के गुब्बारे से मेन एंट्रेंस बना है बाहर पांच छ लड़के खड़े हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो यह एक पार्क की है जो की बहोत बड़ा है चारों तरफ हरे भरे घास है।

इस तस्वीर में जो फोटो है ये कैफे रेस्टोरेंट की है जिसमें पीले रंग के--